जगह यहां की बहुत साफ सुथरी--

जो कि पंखा वंखा ठीक करने वाला या फिर बेचने वाला दुकान है।

गार्डन टाइप का दिख रहा है जो कि बाहर गेट पर दो झंडा दिख रहा है दोनों अलग अलग टाइप का है।

ये एक घर है जहां पर कुछ महिलाएं और बच्चे योगा करते हुए दिख रहे हैं।

टेंस का कलर व्हाइट है और ब्लैक भी है।